यहां पे एक चौकी दिख रहा है चौकी के लकड़ी दिख रहे हैं।

यहां पे दो लकड़ी का दृश्य दिख रहा है लकड़ी के ऊपर एक बच्चा दिख रहा है जो एक लकड़ी पे खड़े दिख रहा है।

बगल में दो तार गया है यहां पे बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पे एक बफर सिस्टम का दृश्य दिख रहा है।

यहां पे एक पार्क का दृश्य दिख रहा हैं पार्क के अन्दर एक स्विमिंग पूल का दृश्य दिख रहा हैं।

यहां एक चेयर है चेयर के ऊपर एक छोटा सा तकिया रखा हुआ है।

यहां पर कुछ टेबुल भी रखे हुए हैं जो काले रंग के दिख रहे हैं।

यहां पे एक मंदिर का दृश्य दिख रहा है मंदिर के चारों ओर आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं।

ऊपर में ये घर के ऊपर कई सारे औरत खड़ी है।

एक टंकी दिख रहा है जो काले रंग का है और दो पाइप दिख रहा है।

यहां पे कुछ भूरा रेड कलर का एक बॉक्स दिख रहा है बगल में एक बोरा रखा हुआ है और बगल में एक पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा है।

यहां बगल में दो चेयर दिख रहे है जिसके बगल मे एक डब्बा रखा हुआ है।

यहां पे एक टेबुल भी दिख रहा है येलो कलर का ऊपर व्हाइट कलर का प्लेट रखा हुआ है और उसके बगल में प्लास्टिक लगा हुआ है।

ऊपर दरवाजा लगे हुए हैं जो हरे रंग के दिख रहे हैं यहां पे कुछ दरवाजे और भी दिख रहे है।

जिसके उसके नीचे दो टायर दिख रहे हैं टायर के ऊपर दो प्लास्टिक चिपकाए हुए हैं।

यहां पे एक कुत्ता दिख रहा है बगल में एक चेयर रखा हुआ है दो ठे य जो ब्राउन कलर का है।

यहां पे नीचे आर_जी लिखा हुआ है डब्बे पे और उसके ऊपर सोनी लिखा हुआ है।

घर के बगल मे क कई सारी खिड़की दिख रही है।

यहां पे एक गेट भी दिख रहा है जिसके अंदर धूप की रोशनी पड़ रही है।